इस छवि मे तीन घर नजर आ रहे हैं।

बहुत सारे लाइट लगे हुए हैं।

बहुत सारे मनुष्य नजर आ रहे हैं।

ये एक दुकान की छवि है।

एक कचरे का डब्बा भी नजर आ रहा है।

एक जे_सी_बी भी नजर आ रहा है जो खुदाई कर रहा है।

बड़े बड़े लोहे के सामान भी नजर आ रहे हैं।

एक बोर्ड भी लगा हुआ है जिसका रंग नीला हरा और सफेद है।

बहुत सारे मनुष्य लाइन में लगे हुए हैं और कुछ साइड में ठड़े हैं।

तालाब के साइड मे बहुत सारे हरे भरे पेड़ नज़र आ रहे हैं।

ये एक बड़ी सी इमारत है।

इमारत में बहुत सारे रंग बिरंगे लाइट भी लगे हुए हैं।

ये एक रोड की तस्वीर है।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

इस छवि में बहुत सारे बकरी नजर आ रहे हैं जो पानी पीते हुए दिख रहे हैं।

बहुत सारे लाइट लगे हुए हैं।

सोफा भी नजर आ रहा है।

मनुष्य के साइड में एक भगवान का चित्र भी नजर आ रहा है।

ए_टी_एम के दोनों साइड दो दुकान नजर आ रहे हैं।

बहोत सारे दुकान भी नजर आ रहे हैं।

पीछे दूर बहुत सारे हरे भरे पेर भी नजर आ रहे हैं।

रोड के साइड में बहोत सारे पेड़ पौधे भी नजर आ रहे हैं।

तीन गाड़ी भी नजर आ रहे हैं।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

दुकान का रंग सफेद कलर का है।

बिल्डिंग का रंग सफेद और नीला है।

ये एक रेलवे स्टेशन का तस्वीर है।

दीवार में कुछ पोस्टर लगे हुए हैं।